मुझे एक अंकल उस गुफा के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं अंकल ने ग्रे कलर की --

यहाँ पर मुझे पीछे झोपड़ी टाईप भी दिखाई दे रही है ।

जहाँ पर तीन लड़के एक दूसरे से के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए दिखाई दे रहा है |